ई फोटू क माईन रोड है रोड क सारह सोणी सोणी रोडां काड राखी है।

तो भाइयों यह फोटो है आपने जिसमे चार लैपटॉप पढ़या है और भाई बेठियों है लैपटॉप पे।

यह फोटो माईन आदमी खड़िया है मंदिर-मस्जिद की फोटू है आ और आदमी खड्या है हाथ जोड़ है --

लाइट लगा रखी है और सुनो होटल है लंबों होटल पूरो बड़ों होटल है सुनो होटल ।

यह फोटो है लुगाई की दुकान की और काउन्टर पर पड़ी है जलेबी दाल पड़ी है पाँच छः भांत की भुजिया पड़ी है और रसमालाई भी पड़ी है लड्डू पडया है पेड़ा है इम --

फोटो है भाई यह प्लैट की ओहो इसमें तो चिकन था भाई लेग पीस पड़े है चार बीच में कचोरी है एक फूल सा है भाई टेबल के होटल की फोटो है ओहो लेग पीस बहुत सोणे है भाई।